बड़ा सी लाइट लगी है बहोत बड़े बड़े पोल लगे हैं।

पुरानी ये मुगलों के काल का लग रहा है।

ये बहोत ही सुंदर है छठी मैया का मंदिर लग रहा है यहां बहोत प्यारी सजावट है।

यह एक समुद्र लग रहा है बहोत बड़ा है पानी है।

यहां का फर्श मार्बल का है और यहां सफाई है।

पार्किंग के लिए व्यवस्था है यहां लाइटें बहुत ज्यादा है।

इसके बाहर बहोत ज्यादा पेड़ और लाइटे लगी है।

बहुत ही सुंदर लग रहा है यहां पर बहुत सारी इमारतें हैं बड़ी-बड़ी--

ऑफिस है इसमें शिशा रखा है।

ये एक बड़ा सा स्कूल है या फिर एक अकेडमी है।

बच्चो को ट्रेन किया जाता है।

और एक फरस है बड़ा सा रोड है।